मुझे यहां मुझे यहां मिट्टी नज़र आ रही है मुझे यहां कुछ मुझे आ रहा है मुझे खुला हुआ आसमान नज़र आ रहा है।

यहां जो दिवाल है वो भी ऑरेंज दिखाई दे रही है एक वाइट दिखाई दे रही है एक पंखा भी दिखाई दे रहा है और बल्ब भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

देखए यहाँ पर मुझे एक बडासा बिल्डिंग नज़र आ रही है उसमे ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

देखिए हमें यहा पर बहुत ही सुंदर एक रोड नज़र आ रही है यहा से चल कर जाने में पानी भी नजर आ रहा है ग्रीन ग्रीन घास भी नज़र आ रही है।

देखिये यहाँ पे हमे एक बस नज़र आ रही है ट्रक नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक भी वाइट कलर का ट्रक है और लम्बा स खम्बा भी है और एक मशीन भी है।

यहां पर बहुत ही सुन्दर एक बड़ा सा हॉल हमें नज़र आ रहा है यहां पर बगल में लाइट भी जल रही है यहा पर विंडो भी है विंडो खुली भी हुई है लगी भी हुई है।

रनिंग कर रहे है मुझे वह पर उन लोगो ने पहने हुए येल्लो कलर के कपडे नजर आ रहे है जैकेट भी नजर आ रही है यहां पर मुझे येल्लो येल्लो नाव और व्हाईट कलर की नाव भी नजर आ रही हैऔर पानी भी नजर आ रहा है मुझे हरियाली भी नजर आ रही है।